और एक चेयर दिखाई दे रहा है।

ओ व्हाइट टोकरी जैसा कुछ उसमें भी --

आसमान भी ब्लू व्हाइट में दिखाई दे रहा है घर भी --

क्रीम बिस्किट भी चिपकाया हुआ है।

उस दीवाल पे भी ब्लू कलर का से कुछ दीवाल पे लिखा है।

यहाँ एक होटल में एक एक आदमी एक औरत --

ऑरेंज ग्रीन में भी दिवाल खड़ा हुआ है।

औ उस रिक्शे पे व्हाइट सामान --

व्हाइट -व्हाइट है और ग्रीन कलर के पौधे भी हैं बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

प्लेटफॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है।

हाथ में कुछ लिया है हाथ नाप रहा है।

यह एक बहुत बड़ा फ्लैट है।